ये कोई जगह है जहां पे डांस किया जा रहा है।

यह इस्कूल बस है। जो बच्चे को इस्कूल तक छोड़ते हैं।